हमको इस तस्वीर में एक बरंदा दिखाई दे रहा है दो डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

काफी सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है मुझे इधर बहुत सारी गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर मे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान का ऊपर मुझे हिंदी में कुछ लिखाई दे रहा है सामने मुझे एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर के छत में मुझे ए_सी दिखाई दे रहा है और मुझे लोहे भी दिखाई दे रहा है पीछे मुझे घास भी दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर काफी सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे पीछे में पर्दा दिखाई दे रहे हैं।

रस्ते के किनारे मुझे काफी सारे लाल कलर की फ्लॉवर पॉट भी दिखाई दे रहे है। रास्ते में मुझे एक इंसान दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक रूम दिखाई दे रही है रूम के अंदर मुझे तीन बिस्तर दिखाई दे रही है।

मुझे इधर केले के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है।

पीछे मुझे काफी सारे कपड़े भी दिखाई दे रही है।

लाल कलर की बैग भी दिखाई दे रही है सामने मुझे काफी सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रही है नीचे मुझे सूखे पत्ते भी दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ लिखा हुआ है नीचे मुझे फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रही है।

क्लिपबोर्ड दिखाई दे रही है और फेविकोल दिखाई दे रही है मुझे इधर नीचे में काफी सारे पेपर भी गिरे हुए दिखाई दे रही है।

अंदर में काफी सारे लोहे की सामान रखे हुए हैं।

गांव के उसे पर मुझे लंबा सा टावर भी दिखाई दे रहा है।

इधर मुझे घर भी दिखाई दे रही है जो टीना से बना हुआ है घर के पीछे मुझे एक--

दीवार भी दिखाई दे रही है नीचे मुझे एक जमीन दिखाई दे रही है जमीन के ऊपर छोटा छोटा सुखा घास भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रही है मुझे इधर एक सीट भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक जगह दिखाई दे रहा है सामने मुझे एक औरत दिखाई दे रहा है।

काफी सारा ऑरेंज दिखाई दे रहा है एक बास्केट भी दिखाई दे रहा है सामने मुझे एक छाता भी दिखाई दे रहा है।